ब्रिज के सामने ही दो बड़े-बड़े टावर नजर आ रहे हैं साथ ही बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक खंडहर का है जहां पे पहले राजा रजवाड़े यहाँ पे रहते होंगे ये एक महल का खंडहर है।

इनको देख कर लगता है कि ये डांस का प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के दिन या फिर रिपब्लिक डे के दिन का रिहल-सिहल का है।

उन्ही का ये प्रतिमा स्मारक बना हुआ है जो देखने में काफी हीं गर्व महसूस कराता है।

और यह एक पत्तल में रखा हुआ है एक कढ़ाई के ऊपर जो देखने में काफी स्वादिष्ट लग रहा है।

हाजीपुर हिंदी इंग्लिश एवं उर्दू तीनो लैंग्वेज में अच्छे से लिखे गए हैं और इस --

लेकिन फिर भी इंडिया में बहुत फेमस ब्रांड है।

जांघिया गंजी जीन्स इत्यादि अनेक प्रकार के यहाँ पे फ --

यह नज़ारा एक फिश बाजार का है जहाँ पे कुछ मछवारे मछलियों को बेच रहे है।

कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं एवं कई सारे इंजीनियरिंग के ग्रुप भी लगे हुए हैं इस बिल्डिंग या फिर इस पूल को बनाने में।

की काफी अच्छा लग रहा है देखने में और यह काफी ही कला का प्रतीक नमून --

जो की देखने में काफी ही अच्छा लग रहा है क्यूंकि ये ऑटो रिक्शा पॉल्यूशन नहीं करते हैं।

और इसके साथ ही यहाँ पे ग्रीन कार्बेट बिछाया गया है और यह बंदा पुशअप कर रहा है और इसके साथ ही --